ये एक बार है जिसके बाहर साइड में वाइट कलर के टाइल्स लगे--

ये बिल्डिंगस है बिल्डिंगस का कलर वाइट ग्रीन है पेड़ो का कलर भी ब्लैक एण्ड व्हाइट हो रहा है।

यह बहुत पुरानी बिल्डिंग है इनका कलर येलो है में थोड़ा बहुत लाल कलर भी किया गया हैं।

ये एक रोड बनाया गया है रोड पर डिजाइन दी गई है रोड पर थोड़े बहुत पैरों के निशान भी हैं ।

और साइड ओ में पाइप्स वगैरह लगे हुए है इसमें कई रेड कलर के कुर्सियाँ लगाई गई है साइड में एक जोकर को बिठाया गया हैं।

ये एक होटल है के साइड में कार पार्क एरिया है और गैरेज भी है कार है रिपेर होने के और इसके छत के कलर व्हाइट हैं ।